इस मूर्ति के सामने एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ --

इस माकन के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है नगर पंचायत--

यहाँ पर बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे एक हॉस्पिटल बना हुआ है।

यहाँ पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे एक सड़क बनी हुई है सड़क के बिच में--

दिखाई दे रहे है और कुछ लोहे की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मिनी बस दिखाई दे रही है जिस पर परफेक्ट लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें एक कौन --

जिसपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है गीता कोचिंग --